एक केरला नंबर की है।

चरच का है और यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं ये रात के समय के दृश्य है जहाँ--

रेसिंग साइकलें यानि गेयर की साइकलें नजर आ रही है यह गेयर की साइकिल एक की लोहे की --

लगाया हुआ है डबल बेड में --